विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां ऊपर की अलमारीयों पर सजी हुई हैं।

नीचे की अलमारी में तरबूज और पपीते ढंग से रखे गए हैं।

ऐसा लगता है कि यह छोटी फल और सब्जी की दुकान है।

दो संभव इमारत की नींव है कि छत का हिस्सा है।

आसपास मिट्टी और कुछ हरी भ घास भी उगी हुई है।

सड़क के किनारे कुछ वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।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

दुकान बिभिन्न प्रकार के रंगीन प्लास्टिक के कंटेनर और अन्य कई सामानों से भरी हुई है।

इस तस्वीर में हमें एक दुकान का अंदरूनी भाग दिखाई दे रहा है।

नीचे की मंजिल पर एक बंद दुकान या गैरेज जैसा दिखाई दे रहा है।

एक नीले रंग का शेड पेट्रोल पंप पर बना है।

कुछ पत्ते पर हल्के पीले रंग की झलक दिखाई दे रही है ऐसा लग रहा है कि ये किसी बगीचे या नर्सरी से उगी हुई झाड़ियां है।

तस्वीर एक इमारत की है जिसमें एक हरे रंग का बड़ा सा गेट लगा हुआ है।

गेट पर गुलाबी रंग के स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं।

ग्राउंड फ्लोर पर कई दुकानें हैं जिनके शटर बंद है।

जिनमें धार्मिक चित्र और मूर्तियां शामिल है।

नीचे एक छोटा सा तालाब बना हुआ है जहां कुछ लोग नहा रहे हैं।

बांध की संरचना कंक्रीट से बनी हुई है और इनमें कई गेट दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कुछ लोग और एक स्थायी आश्रय दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें बहु मंजिला इमारत दिख रही है।

ऐसा लगता है कि ग्राहक अपने साफ कपड़े लेने आए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक हाथी पानी में खड़ा दिखाई दे रहा है।

एक पूल जैसा ढांचा नजर आ रहा है और किनारे पर भीड़ भी दिखाई दे रही है।

शेल्फ विभिन्न प्रकार की किताबों और प्रकितयों से भरी हुई है।

इस तस्वीर में हमें एक होटल या रेस्टुरेंट का दृश्य दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में हमें दुकान का दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिसमें फर्नीचर रखा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें दो ई रिक्शा खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक ई रिक्शा हरा और पीला है जबकि दूसरा काले रंग का है।

आसमान में गुलाबी और बैंगनी रंग का खूबसूरत बादल छाए हुए हैं।

एक व्यक्ति पैदल रास्ते पर चलता दिखाई दे रहा है।

मनो में वो व्हाइट कवर चार्जर हेडफोंस और अन्य प्रकार के वस्तुएं भी शामिल हैं।